लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बगल में एक सीढ़ी नजर आ रही ए_टी_एम पे ब्ल्यू कलर का प्रयोग हैं।

सामने में एक रूम नज़र आ रहा है रूम में सामने में स्ट्रेचर नज़र आ रहा है स्ट्रेचर पे ब्लैक कलर का गद्दा लगा हुआ है इसके निचे पैरोमे--

तार लगी हुई हैं सामने पाइप नजर आ रहा हैं कुछ मशीनरी नजर आ रही है।

यहाँ पे छत का कलर ब्लू और वाइट कलर का हें लोग--

नजर आ रही है उसका कलर व्हाइट है सामने में अलमारी में कुछ बॉक्स रखे हुए है एक चेयर रखे हुए हैं।

यहाँ पे बाहर में खुर्ची लगी हुयी है बेंच बैठने के लिए ग्रीन कलर का और फ्लोर पे रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ है ऊपर में व्हाइट चेयर रखी हुयी है ।

आम रास्ता नहीं है लिखाफा बोर्ड लगा हुआ है बड़ा गेट लगा हुआ।

सामने में एक रूम नजर आ रहा हैं रूम में एक रखीं हुई हैं लोहे की उसके ऊपर में--